इस वीडियो में नक्सा फोटो कोफी इस्टूडियो लिखा हुआ है।

पंखा है एक एल_इ_डी बोल है।

सामने बहुत हिरण है।

सामने एक एस_बी_आई बैंक है ए_टी_एम है।

और इसमें अच्छे सब खिड़कियां भी दिख रहा है।

ऊपर में एक नीम का पेड़ के डाल --

सामने एक बड़ा तलाव है अगल बगल पार्किंग बनाया हुआ है।

बहुत सारे कपड़े रखें हुए है और डब्बा में भी पैकिंग हैं।

दो शटर ऐसी ही खुला हुआ है।

एक इल_ई_डी लाइट जल रहा है इधर से--

यहां पर एक डैम है डैम में लोग नहा रहे हैं बहुत लोग खड़े हैं और लोग नहा रहे हैं।

यहां पे दो से तीन नांव वाले हैं नांव पे बहुत सारे लोग बैठे हैं।

दस से बारह पक्षी ऊपर से उड़ रहे हैं।